यह इमेज में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसके बाहर हमें काला कलर का गेट दिख रहा है जोकि --

यह इमेज में हमें बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जा रही है जिसका रंग हमे लाल और हरा दिख रहा है। वहाँ आगे हमें बहुत सी चौड़ाव निकली हुई दिख रही है तथा बीच में प्रवेश द्वार बना हुआ है।

तथा वहाँ पर हमें एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ दिख रहा है जिसके ऊपर इंडियन पेट्रोल लिखा हुआ है वहाँ पर हमें एक गार्डन दिख रहा है जो की छोटा सा है उसके अंदर एक बहुत छोटे-छोटे पौधे --

यह इमेज हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग की दिखाई जा रही है जिसके साइड में हमें और नीचे हमें बहोत सी दुकाने बनी हुई दिख रही है। वहां नीचे एक जनरल किराना स्टोर है जिसके अंदर --

इसके ऊपर हमे बहुत सी खिड़कियां दिख रही है जो कि कांच की है तथा इसमें हुए हैं। तथा वहाँ पर हमें एक बड़ी सी कार खड़ी दिख रही है जो कि एक्स यू वी है।

वहाँ पे हमें दो फ्लैग्स दिखाई रही है जिसका रंग पीला है और वहाँ पे एक बड़ी सी झुला भी है जोकि पीले रंग का नज़र आ रहा है।